इस फोटो में देखिए एक जबरदस्त माडर्न बिल्डिंग लगता है।

इस फोटो में देखिए बिल्कुल स्कूल कॉलेज जैसे लगता है।

इस एक कोने में देखो एक सुंदर सा पात है।

और बिल्डिंग के सामने छोटी छोटी झाड़ियां और पेड़ पौधे नीचे--

इस फोटो को देख के लगता है कि ये किसी बड़े मॉल का है।

देखिए एक तरफ से चमकदार रेलिंग लगी हुई हैं और दूसरी तरफ नदी का पानी शांत लहरों के साथ बह रहा है।

और यहां की हवा में एक अलग ही तहजीब है।

और सब दरवाजे पर अलग अलग लोग लाइन में खड़े हैं।

बिल्डिंग एकदम मजबूत और चार मंजिल है रंग भी एकदम डिसेंट है और सामने बड़ा गेट है लाल और पीला रंग का।

यहां ये साफ सुथरा अ महल जैसे लगता--

कुर्सियां भी एकदम स्टाइलिस्ट है और बीच बीच में हरी भरी पौधे लगायें गये है।

पीछे काउंटर पर मेनू बोर्ड लगा है कॉफ़ी स्नैक्स सब कुछ मिलता है।

यहां शाम के टाइम मंगाती हुई एक एकदम महल जैसे लगता है गे--

सुंदर सुंदर दुपट्टे और सूट लटकाए गए हैं।

कुछ कस्टमर ले कपड़े निकल रहे हैं और साफ सुथरा माहौल है यहां पे।

इस फोटो को देख के लगता है कि कोई शान्त हसीन गार्डेन है।

और ऊपर नीचे अलमारियां बनाई गई है और बीच में गैस चिमनियां भी लगी हैं।

लगता है कि कोई मेला फंक्शन या पब्लिक इवेंट हो रहा है।

देखो ना ब्लू खिड़की और दरवाजा के साथ लंबी लंबी कुर्सी और बाहर टेबल फुल मॉडर्न टच वाला है।

ऊपर से लाइटिंग भी बड़ी शानदार की गई है।

और एक छतरी जैसा गुंबद भी ऊपर है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

और यहां चारों तरफ पेड़ पौधे हरा भरा माहौल बनाए हैं।

इस फोटो को देखने से लगता है कि ये शानदार स्टाइल वाला है और ऊपर लिखा है मीरा रेस्टोरेंट एंड बैंकेट ।

रोशनी और शानदार दोनों तरफ दिख रहा है नीचे बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के बोर्ड लगे हैं।